अह स्लैब पे कुछ कंटेनर पड़े हुए हैं बंद उनमें से खाना डाला होता है और उसमें लाइट जग रही--

इस पिक में एक बड़ी सी ट्रे दिख रही--

जे एक ज्वैलर की शॉप है।

व्यक्ति बैठे हुए वूमेन दिख रही है।

पे लगा हुआ पोस्टर दिख रहा है।

और दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।

ये एक बहोत बड़े रिवर का पिक है यहां--

ये एक शॉप का पिक लग रहा है चाहे शेल्फे बनी हुई है।

लो कुछ खराबी हुई है उसको ठीक करता हुआ पर्सन दिख रहा है।

टेंपल बना हुआ है उस दीवार पे एक प्रतिमा बनी हुई है।

इसमें एक शॉप खुली है और पास वाले शॉप सभी बंद हैं।

इसमे बहोत सारी सब्जी राखी हुई हैं कुछ कडम पड़े हुई हैं।

और कुछ केले टंगे हुए हैं।

यहां एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है।

और ग्राउंड दिखाई दे रही है। ग्राउंड में कुछ बाग बगीचे लगे हुए हैं। कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।